इस तस्वीर में एक गेट को दिखाया है जिसका रंग ग्रीन है आसपास बहोत सारी घास और पेड़ --

इस तस्वीर में एक मस्जिद को दिखाया है।

आसपास बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है और ये मस्जिद पूरी खाली दिख रही है।

इस तस्वीर में कुछ लोग दौड़ लगा रहे हैं ये एक मैदान है जहां सभी गेम के लिए तैयार है।

इस तस्वीर में एक मेडिकल शॉप --

आसपास का नजारा देखने में काफी अच्छा है और बहोत सारे पेड़ पौधे पहाड़ियाँ हैं।

जो एक शॉप के बाहर खड़ा है आस पास बहोत सारे सामान--

इस तस्वीर में एक आइसक्रीम पार्लर को दिखाया है।

जो कि रेड ब्लू और ग्रीन रंग का है उसमें पानी की कुछ छीटे आ रहे हैं आसपास बहुत सारी पानी बह रहा है।

दो घर दिख रहे हैं जो की पानी में डूब चुके हैं आसपास बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

जहां सभी लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं।

अंदर एक व्यक्ति है जिसने व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का पजामा पहना है।

सड़क बनी हुईं हैं जो की देखने में काफी अच्छा और सुंदर लग रहा है ये एक खेत है।

और बहुत से लोग यहां शॉपिंग करने आते हैं।

और दो जन ए_सी लगे हुए हैं और इनके पास जालियां लगी हुई है।